मुझे दो तीन मिरर भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग यहां पे बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं मुझे यहां पर चेयर और टेबल भी नजर आ रहे हैं।

के साथ में एक पुल भी बना है जहां पे लोहे की रेलिंग बनाई गई है इसमें दो आदमी खड़े हुए हैं और आसपास मुझे हरे भरे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे--

और एक पोल दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी तारे ले--

जहां पे लोग फोन में बाते कर रहे है और कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे है।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

आस पास मुझे बड़े सारे घर भी नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सुंदर फूलों से इसे सजाया गया है यहां पे बहोत सारी लाइट्स भी जाली हैं।

और यहां पे एक रास्ता भी है जहां पे लोग चल रहे हैं।

यहां पे मुझे एक रेड कलर की चेयर और व्हाइट कलर का कपड़ा नहीं दिख रहा है और आसपास मुझे हरे भरे पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

जहाँ पे एक स्टैचू के बाल कटे हुए दिखाई दे रहे हैं और फेस को बल ब्लर किया गया है।

लोग मुझे कांपे मारते हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक ग्राउंड नजर आ रहा है यहां पे हरी भरी घास--

यहाँ पर चार ब्लैक कलर के सोफे रखे हुए हैं।

और यहां पर मुझे एक शीशे का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बहुत बड़ी सड़क नजर आ रही है यहां पे बहुत सारा गंदा पानी भरा हुआ है।

यहां पे आसपास लोहे के खंभे भी लगे हुए हैं।